या तो बच्चे पढ़ते हैं या फिर यह खेलने का कोई स्थान होगा उनका--

काफी सारे मैट्रेस रखे हुए है यहां पे ये मैट्रेस का होलसेल मार्केट या मैट्रेस शॉप हो सकती है। जहां पे--

मैट्ट्रेस बेचे जाते होंगे और सिर्फ यहां पर मैट्रेस का ही शॉप दिख रही है।

सब उनको प्रोत्साहित करते हुए यहां पे उनको प्लेजर कर जा रहा--

यहां पे डॉक्टर क्लीन की ब्रांडिंग की गई है बीच में पानी के लिए रखा गया पांच लीटर ।

ये कोई शॉप के अंदर का है कोई शूज वगैरा की शॉप है या कोई फिनायल वगैरा की --

जहां पे सामने ओनर बैठ सकते हैं। कस्टमर आएंगे वो सामने बैठ सकते हैं। चेयर रखी है। बोटलस् रखी है। ऊपर डेकोरेट हो रखा हैं।

फ़िशेज बेची जा रही हैं काफी टाइप्स की अलग अलग प्रकार की मार्केट जिसको मच्छी मार्केट कहा जाता है।

सामने एक और कोई वैंडर है ये फिश मंडी बोल सकते हैं फिश मंडी होगी ये।

यहां पे कोई गुफा हो सकती है या कोई मंदिर हो सकता है भगवान का जिसको लोग देखने आए हुए है देखने जा रहे--

ये कोई एरिया है आउटर का जहां पे गैरेज वगैरा बनाया गया है ब्लू कलर का--